दो कलर की एक बस है जिसपे बेलगावी टू धारवाडी ए.जी.सी. वॉल्वो लिखा हुआ है।

इसमें कुछ व्यक्ति खड़े हैं एक आदमी नीचे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां एक बड़ी सी दरगाह तथा उसके बगल में दो छोटी छोटी चबूतरे जैसी दिखाई दे रहा है जिसपे चादर चढ़ी हुई है।

यहाँ पे छोट-छोटे हरे-हरे पौधे दिखाई दे रहे हैं।

एक टिस्सू पेपर का डब्बा दिखाई दे रहा है ।

यहाँ रेल की पटरी दिखाई दे रही है तथा पटरी के उस साइड मे एक पानी की टंकी दिखाई दे रही है जिस --

ये हथौड़ी से कुछ ठोक रहे है।

यह एक चर्च दिखाई दे रहा है जिसमे लाइटिंग लगी हैं तथा उसके बाहर महिला तथा पुरुष दिखाई दे रहे हैं तथा --